अ उसमें बहोत सी ए_सी भीं हैं उसके रेफ्रिजरेटर बाहर लगाए हुए हैं।

दुकान के अंदर कोई दिख नहीं रहा है यहां पे और पोइ पेप्सी दी गई है और आइस आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स दिए गए--

और यहां पे दो आदमी दिख रहे है एक अपना फोन देख रहा है और बैठा है।

क्या डांस का कंपटीशन लग रहा है? एक लड़की जो नाट्य।

और रेस्टोरेंट की बाहर खेलने के लिए ट्रेन गाड़ी रखी हुई है।

और उसका नाम है लाइफ केयर मेडिकल जिसका बोर्ड नीले कलर में दिया गया है और बाजू में ही उसके--

शेर के दो बच्चे और दिखाई दे रहा है एक औरत पीछे से सेल्फी खींच रही है।

और उसके पीछे चर्च का एक सिम्बल दिया है।

जो हीउमर की एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रही है उसके अंदर एक आदमी खड़ा है और पीछे एक पंखा चल रहा है।

यह चित्र मुझे एक मेडिकल का दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत से स्प्रे दिखाई दे रहे--

जिसमें बहोत सी लड़कियों की चप्पले ज्यादाकर दिखाई दे रही हैं।

और वग्योर करके बोर्ड का नाम दिया गया है उसके पर तीन--

तीन कार के आगे दो एक्टिवा है जो काले रंग की दिख रही है और एक हरे रंग का गेट दिखाई दे रहा है।